दो खिड़की है यहाँ ऑफिस रूम है यहाँ पे बंदे बैठते हैं।

और देखिये कोको-कोला का बोर्ड लगा है यहाँ पे।